एक स्टेडियम है जहाँ पे क्रिकेट होता है तो दर्शकों को ऑनलाइन दिखाया जाता है और --

तीन गाय है जिसमें दो गाय एक साथ है एक गाय अलग है बच्चा अलग है दोनों को नाद में खाने के लिये चारा दिया गया है।

और डिश टीवी है पंखा है पंखा का डेना है लाइट है और छत डिश टीवी का भी छतरी लगा हुआ है और एचडी क्वालिटी का है सब और अच्छा खासा सब समान--

ये तैयारी में है और दो फ्लोर है और क्या दोनों पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है बगल में एक पेड़ है।

यह एक प्लस टू हाई स्कूल माला पुर है माल्यापुर है| प्लस टू हाई स्कूल माल्यापुर है जिसके आगे--

दीवालों पर डिफरेंट कलर का पेंट और टाइल्स लगा हुआ है और साफ सुथरा सारा है।

यह कोई एक शोरूम है जहां पे स्कूटी सब खड़ी है।

नई स्कूटी सब है हेलमेट सब रखा हुआ है ग-गाड़ी पे दूसरे तरफ भी बिल्डिंग है।